कुछ लोग भी यहां मौजूद हैं सीलिंग में रंग बिरंगे लाइटें लगाई गई है।

सामने एक पोस्टर में फ्रेंड्स द परफेक्ट ब्लेंड लिखा हुआ है।

सामने बहुत सारे फूले लगी हुई है।

चढ़ने एवं उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है।

यह संध्या का समय प्रतीत हो रहा है।

यहां पानी एक बहुत बड़ा फुहारा लगाया गया है।

यह एक बकरी का शेड बना हुआ है।

एक अस्थाई मकान भी बनाया गया है।

एबल पर एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

दीवालो में पंखे लगाए गए हैं।

इसमें एक गाड़ी भी खड़ी है।

इसे बाहर से पेंट किया गया है।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

यहां काफी साफ सफाई है कुछ बल्बे एवं पंखे भी लगे हुए हैं।

दीवार से जुड़ी एक अग्निशामक यंत्र रखी गई है।

कुछ हरे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं एक बड़ी सी लाइट नीचे गाड़ी गई है।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

बहुत सारे बलबे में जलती हुई नजर आ रही है।

यह एक अस्टुडियो का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दीवाल को सैफरोन रंग से पेंट किया गया है।

यह तस्वीर एक कार्यक्रम का हैं।

यहां एक बहु मंजिला इमारत बनाया गया है जिसमें कांच की खिड़कियां लगी हुई है।

अमने कांच के दरवाजे लगे हुए हैं एक इंसान भी यहां पर मौजूद है।